इस फोटो में हम देख सकते हैं यह एक लाइब्रेरी की फोटो है जहाँ बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं।

इस फोटो में हम देख सकते हैंयहाँ एक घर का काम चल रहा है जहाँ कुछ ऊपर लोग बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है और तीन व्यक्ति ऊपर बैठे हुए --

यह एक फ्रूट्स शॉप का फोटो है जहाँ पर बहुत सारे तरबूज केले और गोभी और अनानास --

यह एक सब्जी शॉप का फोटो है जहाँ लेहसन प्याज गोभी रखी हुई है कुछ केले भी लटके हुए हैं ऊपर एक --

और चार पांच व्यक्ति खड़े हुए हैं जिनके पैर-पैर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ किलो रखा हुआ है और एक व्यक्ति हाथ में पकड़े --

गन्ने रखे हुए हैं और यहाँ कुछ बच्चे भी खड़े हुए हैं और यहाँ लेडिस खड़ी हुई हैं।

आठ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर और --

और जिसके हाथ में हेयर ड्रायर रखे हुए हैं और यह चेयर पे बैठा हुआ है एक खड़ा हुआ है।